जो बाहर लड़का है उसने ऊपर की ओर मुंह किया हुआ है।

फ्लैट देख सकते हैं जिसके बाहर हमें एक स्विंग पूल भी नजर आ रहा है जिसके चारों साइड --

ट्रांसपैरेंट बॉटल एककी -पैड मोबाइल एक क्वाइन --

एक ही बिल्डिंगों से भरी हुई है।

यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक पोल पे--

इलेक्ट्रिक तार को देख रहे हैं जिसके नीचे हमें बहुत सारे बांस के बल्लियां नजर आ रही हैं और कुछ कार भी खड़ी हैं।

बहुत ही भारी मोटे हार को देख सकते हैं जो कि एक मीडियम साइज हार है।

फ़ूड इसमें नजर आ रहे हैं ये हार एक फ़ूड शॉप पे टंगी हुई है।

ऑक्सीजन के गोदाम को देख रहे हैं जहाँ पे हमें हजारों ऑक्सीजन्स के सिलेंडर छोटे और बड़े--

इस ऑफिस में हमें लाइटनिंग और कुछ फूलों से डेकोरेशन भी नजर आ रहा है इस--

ऑफिस के राइट- हैंड वॉल पेहमें कुछ डिग्री ज और--

यहाँ पे हम दो बड़ा साइज केक को देख सकते हैं जोकि एक पेस्टीज--

के लिए ये काटा गया है जो कि पिंक कलर का है और एक जो केक है वो येलो कलर का है जिस पे दो --

इस इमेज में हम एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ते हुए देख सकते हैंजहाँ पे हमें पीछे--

तालाब के किनारे कुछ बच्चे एक जिसने छाता ले रखा है और कुछ बच्चे खड़े हुए हैं इसके पीछे हम एक घर देख सकते है।

एग्जीब्यूशन या फिर स्टोर देख रहे हैं जहाँ पे हमें अलग-अलग तरह की--

आर्ट देखने को मिल रही है जिसमें से हमें एक बुद्धा की एक गणेश भगवान एक सत्या एक कैप्टन अमेरिका की शील्ड ।

कुछ कृष्ण भगवान के चेहरे और उनके--

कुछ टाइल्स से पूरे मार्बल फ्रस को सजाया गया है हम एक आम के और कुछ केले के भी--

या फिर इंजन ऑयल का स्टॉल देखने को मिल रहा है जहाँ पे बाहर हमें इंजन ऑयल्स के कुछ कैन और दो चेयर जोकि ब्लैक कलर की नजर आ रही हैं।

होटल के लॉबी को देख रहे हैं जहाँ बाहर हमें--

कुछ फ्लावर पॉट एक दो नजर आ रहे हैं यहाँ बाहर--

चार ट्रिपल या फोर सीटेड --

बैग भी टंगा हुआ दिख रहा है और पीछे--

एक होटल को लॉबी को देख सकते हैं।

यहाँ पे हमें कुछ सीनियर्स सिटीजंस बैठे हुए दि--

इस होटल में हमें एक बड़े-बड़े दो झूमर्स नजर आ रहे हैं और कुछ--

पूरी तरह से रेड कलर के टाइलों से--

जोकि पूरी तरह से वाइट कलर का है।

कॉलेज में जाने के लिए हमें सीधी-सीधी एक ट्रैक नजर आ रहा है जिसके दोनों साइड पूरी तरह मैदान है।

ई-रिक्शा नजर आ रहा है जिसके--

राइनासोर्स की मूर्ति को भी देख सकते हैं जिसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है जिसने हाफ टी-शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ है।

उसके साइड में हम उसके भाई या फिर पेरेंट्स को देख सकते हैं जिन्होंने--

बाहर लॉबी में हम दो बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं जिन्होंने--

अंदर से दो मंजिल तक ऊपर खाली है जिसके ऊपर एकदम सेंटर में --

इसके वर्कर्स जो कि साड़ी और सूट सेल कर रहे हैं और बहुत सारे कस्टमर जो कि इन साड़ी और सूट्स को बाय कर रहे हैं।

लाइट्स बहुत सारी ऊपर देख सकते हैं और कुछ ए_ सी_ भी देख रहे हैं।

जहाँ पे हम कुछ बुक्स और--

क्लिप्स भी नजर आ रही हैं हमें लेफ्ट हैंड वॉल पे हमें ए--

टैक्सी ऑटो रिक्शा भीनजर आ रहे हैं।

एक आदमी को अपने कमर पर हाथ रख के--

या तो स्टेशन या फिर एयरपोर्ट या फिर--

इसी मॉल का लॉबी देख सकते हैं जहाँ पे हमें--

इसके जस्ट सामने हमें बीच में--

हम दोश अलग-अलग शॉप को देख रहे हैं जिसमें से एक शॉप --

इस इमेज में हम पटना का एक बिल्डिंग देख सकते हैं जोकि--

इस बिल्डिंग के बाहर हमें कुछ गाड़ियाँ और कुछ अलग-अलग स्टॉल भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में हम एक ऑफिस को देख सकते हैं जिसमें--

यहाँ राइट हैंड साइड में वेलनेस नाम का एक मिरर --

इस इमेज में हम सेंड मनी का एक--

हमें जो इसमें चेयर नजर आ रही है वो--

यहाँ पे हम लॉबी में एक आदमी को या फिर बहुत सारे लोगों को खड़े हुए देख रहे हैं।

यहाँ पे लाइन लगाने के लिए एक सटीक--

सरकारी लाइट्स नजर आ रही।

पे हम बहुत सारे ट्रक और बसेस भी पार्क होते हुए देख सकते हैं।

अपने अपने हारमोनियम के साथप्रोग्राम दे रहे हैं।

और यहाँ पे हमें एक कैमरा भी जोकि ट्राइपॉड पे लगा हुआ है।

यहाँ पे हम गोल्डन और वाइट कलर के झूमर्स देख सकते हैं जिसमें--

यहाँ पे गोल्डन केले के पर्दे भी हैंऔर--

ये जो शॉप है ये पूरी तरह से गोल्डन कलर कीलाइटों से--

इस मॉल में हमें झूमर और बहुत सारी गोल्डन वाइट कलर की लाइटें भी नजर आ रही हैं।

स्काई ब्लू और यलो- कलर की टी-शर्ट पहनी हुई हैऔर ब्लैक पैंट पहने और शूज पहने हुई है।

और यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के डिजाइन में--

लाइन होटल को देख सकते हैं जोकि--

नजर आ रही हैं जोकि राउंड स्क्वायर कलर क स्क्वायर के हैं।

औरकृष्ण भगवान की मूर्ति देख सकते हैं जिन्होंने अपने--

इन्होंने बहुत ही सुंदर दो-दो मुकुट पहना हुआ है।

नो पे ढाई सौ टू साढ़े तीन सौ टू टू --

इस इमेज में हम एक पेस्ट्री एंड केक शॉप को देख सकते हैं जहाँ पे हमें फ्रिज में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के फ्लेवर्स के--

नजर आ रही है जिसमें चॉकलेट फ्लेवर वनीला फ्लेवर इत्यादि शामिल है।

इस इमेज में हम एक दो मंजिला ईमारत को देख सकते हैं जोकि--

सोते हुए और चलते हुए नजर आ रहे हैं।